लीची का रंग बाहर से लाल होता हैजो की अंदर का गुदा सफेद रंग का होता है।

इस तस्वीर मे हम देख सकते हैकी काफी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई है मदिर मे दर्शन--

अ ग्रुप्स मे बच्चे अ गेम्स खेल रहे है काफी सारे बच्चे टहल रहे है कुछ साइकिल चला रहे है संध्या का टाइम है।

इस तस्वीर मे हम देख सकते है की यह एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है जहां पर लोगो की काफी भीड़ जमी हुई है लाईने लगी हुई है।